यहां दो गाड़ियां खड़ी हुई है जिनका कांच दिख रहे हैं यहां पेड़ दिख रहा है यहां पर बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है।

एक बड़ा सा मैदान है आसमान दिख रहा है यहाँ पे एक चबूतरा बना है जिसमे है यहाँ चार पाँच गाड़ी खड़ी है यहाँ पेड़ भी लगे है आगे जो हरे कलर का है इसमे तीन कलर पोते हुए है।

जो की है कत्थई कलर का है और यहाँ जो ये शैड डला हुआ है ये नीले कलर का है यहाँ पेड़ लगे हुए है आसमान दिख रा है बिल्डिंग है यहाँ एक घर है जिसके ऊपर एक काले कलर की टंकी रखी है।

ये जो घर की दीवार है वो सफेद कलर की पुती है यहाँ पे कुछ पेड़ लगे हुए है जो की हरे हैं अंदर एक दरवाजा है जो के ग्रे कलर --

आसमान दिख रहा है और सामने एक पहाड़ दिख रहा है जिसके बहुत सारे पेड़ लगे हुए है और यहाँ रास्ते मे खंबे लगे हुए है कुछ लोहे की है कुछ जाली वाली खंबे है यहाँ बहुत सी दुकाने भी लगी हुई है।

और इसकी साइड से एक हरी बिल्डिंग है जो की हरे कलर की है यहाँ पे पेड़ लगे हुए है एक छोटा दुबला पतला है एक मोटा घने पेड़ लगे हुए है।

किराने की स्टोर है जो चीज मिलती है यहाँ पे चाय भी मिलती है यहाँ पे कुर्सियाँ रखी है काले कलर की सफेद कलर की यहाँ पे एक गाड़ी भी खड़ी है यहाँ पे एक बड़ा पोस्टर लगा है यहाँ दीवार दिख रही है आसमान --

एक नीली कलर का शटर है ऊपर आसमान की दीवार है एक जो घर सावित्री वोह क्रीम कलर और लाल कलर का है यहाँ तो एरिया का पानी --